यहां पर एक नाश्ते की दुकान है।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

और उनके ऊपर अलग-अलग डिजाइने बनी हुई हैं।

एक कार सामने खड़ी है जो की पूरी बंजर टाइप लगी हुई है।

जो कि एक एक जजेस की है यहां पर जजेस मिल कर कोई सा फैसला ले रहे--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

एक शॉपिंग मॉल की हैं यहाँ पर हर चीज की शॉपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ हैं--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

और बिजलियां भी लगी हुई हैं।

एक फैकटी की है। यहां पर एक ऊपर से शेड भी लगा हुआ है।

जोकि एक एक चे टेबल की है इसमें एक टेबल की डिजाइन बताई गई है जोकि ब्राउन कलर की है।

खेती बाड़ी की है इसमें कई सारे किसान जोकि महिला और पुरुष दोनों--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

जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं।

यह एक सेविका कंपनी की टॉर्चें हैं यहाँ पर तीन बक्से रखे हैं सेविका टॉर्च के।

इस चित्र में हम देख सकते है कि यहां पर एक तस्वीर खिंची गई है जो कि एक मेले--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

पीले कलर के पेंट में मोबाइल देख रहे हैं।